इस चित्र में एक मंदिर है मंदिर के पीछे जंगल है।

एक ए_टी_एम है ए_टी_एम का नाम है एच_डी_एफ_सी बैंक और इस --

आदमी उनका फोटो ले रहे हैं जोकि हमारे शीशे पर दिख रहा है।

और उसमें कुछ अ गिफ्ट्स केक और डेरीमिल्क --

ये एक मछली शॉप का चित्र है।

और बहोत साले वैरायटी की मछलियां हैं और वहां पर कुछ लोग है।